यह भी एक किला दिख रहा है जिसका कलर उड़ा हुआ है ग्रीन कलर की घास लगी हुई है पार्क टाइप में निकलने की जगह है।

बहोत पुरानी-पुरानी इमारतें बनी हुई है कहीं-कहीं घास लगी हुई है बादल बने हुए है पेड़-पौधे दिख रहे है।

यहाँ एक पहाड़ दिख रहा है ग्रीन पेड़- पौधे दिख रहे है व्हाइट कलर का रास्ता दिख रहा है एक घर दिख रहा है जो ग्रीन कलर का हैं।

एक पार्क बना हुआ है जिसमें लोग खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं आगे घर बने हुए हैं बहुत बड़ा पार्क है।

लकड़ी के ह्म कबर्ड हैं उसके ऊपर खड़े हुए हैं फिर पाल्म के पेड़ लगे हुए है पीतल के बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पीछे एक बोर्ड है जो बहुत प्यारा है।

और कॉफ़ी दिख रही हैं दोनों मगों में और चम्मच एक कप में डूबी हुई हैं और एक चम्मच रखी हुई हैं और कॉफी के पैकेटस रखे हुए हैं कुछ खुले हुए--